गार्डन है कुछ लोग घूम रहे है अ ब्ल्यू टी शर्ट पहेन के यहां पे पेड़ पौधे है।

इस पिक्चर में योगा करते हुए लोगों को दिखाया जा रहा है यहां पे कई लोग योगा कर रहे हैं और--

ब्लू वॉल है सेट लगा हुआ है कई लोग बैठे हैं कई लोग नहा रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा है आसपास में ग्रीन ग्रीन पेड़ हैं।

कई सारे लोग योगा कर रहे हैं एक टीचर है और कई सारे स्टूडेंट हैं अलग अलग जो है अपनी--